और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और पास में गार्डन है और आदमी खड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है।

और यह एक होटल लग रहा है और बाहर आदमी खड़े हैं एक होटल बहुत ही अच्छी लाइटिंग और शॉट लगी और बहुत ही अच्छा वातावरण है इस होटल में।

उक के बैग रखे हुए हैं और बच्चे पड़ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं ब्लैक बोर्ड बोर्ड पर भी कुछ समझाया हुआ है और बाहर बच्चे देख रहे हैं और पास में बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर।

और ये देखो कितना अच्छा माहौल है यहां ये सभी लोग खड़े हैं और ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये अपनी अपनी दोस्तों के साथ आए हुए हैं।

यह एक जोमल ऑफिस है और ये ऑफिस में ऊपर नया ऑफिस बनाया जा रहा है नया निर्माण कार्य चल रहा है और एक महिला खड़ी है और --

गाय आ रही है और एक खजूर का पेड़ भी है और पहाड़ों की तस्वीर और बहुत ही अच्छी तस्वीर है और कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रखा है।

और वहां से आ रहे हैं ओ भी कितना अच्छे लग रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर से नजारा कितना अच्छा होगा और एक रस्ता भी बना हुआ --

और यह एक स्विफ्ट कार शोरूम लग रहा है और यह सड़क के पास है शोरूम बहोत ही अच्छा शोरूम है और सड़क सुरक्षा कॉर्नर है।

भगवान की भी प्रतिमाएं है और यह गिफ्ट का भी शोरूम है और गिफ्ट पैकिंग करने का भी सोर्सेस रखा हुआ है और --

और इस मंदिर की एक ये खासियत है कि अगर आप इस मंदिर पे एक बार जाकर आते हो तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है।

स्किन के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट यहां पे है लिपस्टिक वगैरा-वगैरा बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट है।